यह आदमी एक स्टेज के सामने खड़ा है।

इस स्टेज पर पिंक कलर का पर्दा लगा हुआ है।

दीवाल में दो छोटे रोशनदान बने हुए हैं।

गेट के दोनों और रंगीन झंडे--

इसके सामने बहुत सारी कुर्सियां--

कुछ झाड़ियां भी उगी हुई हैं जमीन पे घासे हैं।

एक साइड में पा अम् ऊंचा पहार जैसा बना हुआ है।

इस तस्वीर में दो छोटे छोटे पिंक कलर के घर दिख रहे हैं।

एक भारतीय झंडा भी पोल के सहारे है लगा हुआ।

इसमें कुछ इनडोर प्लांट के पौधे हैं कुछ फ्लॉवर के पौधे हैं --

यह एक डिपार्टमेंटल स्टोर है जिसमें बहुत सारे सामान है।

इस तस्वीर में बहुत सारी बसें एक लाइन से खड़ी है।

यह एक स्टेज की तस्वीर है।

एक ने पीले कलर का दुपट्टा लगाया है दूसरे ने गुलाबी कलर का दुपट्टा लगाया है।

यह तस्वीर एक पुराने ए सी का है।

एक तरफ लकड़ी इकट्ठा कर रखा गया है।

लो मे पीले कलर के गेंदे लगे हुए है।

तो बस लगी हुई है जिस पर मारवाड़ी कॉलेज लिखा हुआ है।